यहाँ पे एक दुकान दिखाई दे रही है दुकान जो है काफी बड़ी है और दो तीन मंजिल है इसमे ऊपर के साइड मे भी दुकान है और नीचे के साइड मे भी दुकान है और इसमे जो गेट लगाया हुआ है जो कि कांच का है और अभी बंद है।

जंगले में काफी प्रकार के पेड़ लगाए गए है जिसमें से कुछ पेड़ जो है बड़े -बड़े है और झाड़ीदार है कुछ मोटे है कुछ पतले है यहाँ पर आसपास में घास लगाई गई है घास जो हरी- हरी हैं।

यहाँ पर एक बोहोत बड़ी नदी है नदी को देख कर लग रहा है यह काफी गहरी है और बीचों -बीच में एक बनाई गई हैं।

इसमे बोहोत सारे लोग बैठे हुए है जिसमे एक लाल कपड़े पहने हुए ऊपर की साइड मे टेंट लगा हुआ है सामने कुछ कार भी दिखाई दे रही है देखने पे लग रहा है यहाँ पे लोग नहाने के लिए आते है बड़े बड़े पेड भी है।

यहाँ पर ब छोटी सी नदी है नदी जो टाइप का पानी भरा गया है इसमें ऊपर की साइड पे परछाई दिखाई दे रही है और आजू -बाजू में कुछ पथरीला माहोल हैं।

कोई कौरा छाया हो आजू बाजू मे कुछ किनारे दिए गए है और किनारे पर रेता है देखने पर लगा रहा है की नरबदा जी है और बीच मे भी कुछ रेत डली हुई है आजू बाजू मे कुछ पहाड़ लगे हुए है जिसमे कुछ पेड़ है।

यहाँ पर बहोत बड़ी बिल्डिंग हैं बिल्डिंग जो हैं काफी बड़ी हैं और तीन चार मंजिल हैं सामने की ओर मे एक खंबा लगा हुआ हैं जोकि लोहे का हैं और काफी मजबूत हैं।

--ऊपर की साइड मे छत पे भी डिजाइन बनी गई है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है जो की सफेद है इसमे लाल कलर किया गया है इस हवेली पर--

यहाँ पे बहुत बड़ी बिल्डिंग है बिल्डिंग जो है तीन चार मंजिलें है और ऊपर उसकी ऊपरी साइड में कांच की रेलिंग लगाई गई हैं।

यहा पर बहुत बड़ी बिल्डिंग है बिल्डिंग जो है काफी बड़ी है और लाल कलर किया गया है यहाँ पे खंबे खंबे टाइप के दिए गए है जो काफी मोटे मोटे है और यहाँ पे सामने--

पहाड़ जो ही म मट्टी टाइप की है और पथरीले भी है यहाँ पर कुछ घास उगी गई है और कुछ पेड़ है जो की झाड़ीदार है ऊपर आसमान है।